वाले सीरिज के टाइप से होते हैं वो भी है। बहुत बड़ा सा टी.वी. साइड लगाया हुआ है मालूम नही क्या होने वाला है।

बिजली के खंबे भी है तार उर ऊपर से एक जगह जा रही है।

बहोत सारे हैं कोई व्हाइट पहना है कोई एक ही कलर का कपड़ा पहने हुआ फ्रेंच का --